बाहर में बाइक लगा हुआ है।

एक बड़ा बस स्टैंड है जहां पे दो बस लगा हुआ है बस के बगल में एक पेड़ है।

लाल झंडा दिख रहा है छत पर।

एक तरह में नीचे में छड़ है एक दरवाजा मैरून कलर का।

अंदर में नौरंगी नारंगी कलर से रंगा हुआ है।

केला का पेड़ भी है।

एक बड़ा सा खेत है।

बगल में पेड़ पौधा है।

यहां पर स्कूटी का शोरूम है।